टेबल लगा है और उसके पीछे चेयर है एक चेयर पे आदमी बैठा और एक खाली है।

इस रूम के दीवार पे एक ए_सी लगा है।

और एक बड़ा सा शटर है और बड़ा सा एक बोर्ड लगा है जी--

कही टाइल्स लगा है और कही कही कुछ लगा है जोकि नीले काले हरे लाल और सफेद रंग के है।

और ए_टी_एम के रूम के दीवार का रंग सफेद है और बहोत सारे पोस्टर लगे हैं बाहर लोगे और शीशे से बना एक गेट है।

एक खिड़की बंद है और एक खुला है खुले वाले खिड़की में से रोशनी आ रहा है।

ऊपर से पानी बहोत ही तेजी से आ रहा है और पानी पूरा ऊपर से जो आ रहा है वो सफेद है।

बहुत सारे फूल के हार हैं और बहुत सारे फूल के माला है।

और एक पे एक खेत पूरा हरा है छोटे छोटे घास जमें हैं।

जिसमें एक आदमी बैठा है पोस्टर का रंग काला है और बहुत सारे तार गुजरी है।

बाहर एक आम का पत्ता पूरा रस्सी में लगा--

ऊपर एक पोस्टर लगा है जो कि नीले सफेद रंग का है।

इस फोटो में एक छोटा सा केबिन है जिसमें दो दीवारों का रंग एक का रंग हरा है और एक सफेद है और उसमें सीसा लगा है जोकि एक आईना है।

और बहुत सारे ए_सी के आउटडोर यूनिट लगे हैं।